आप किसी भी तरह का किताब आपको मिल सकती हे.

यहां पर तीन रंग के गुबारे टंगे हुए है.

और गोल आकार में है यहाँ पर बहुत सारे घूमने आए हुए हैं।

ये टेनिस ग्राउंड हे यहाँ पे चार व्यक्ति टेनिस खेल रहे हे.

जिसके बाहर में सर्विस लिखी हुई है.

अह गेट के अंदर एक चिक्की अह सीट बनी हुई है।

और ऊपर एक लंबासा

ये हापे चार ठो खम्भे खड़े हे.

और बहोत सुन्दर से हरे भरे से छोटे छोटे पेड़ लगे हुए है.

इस बस पे एक व्यक्ति चढ़ रहा है.

और दो व्यक्ति ब निचे चल रहे है.

और बस के पीछे साइड मे तीन व्यक्ति खड़े हे.

नीचे में ग्रीन कलर कि मैट बिछी हुई है.

एक गॉर्ड है एक छोटासा पार्क जैसा है.

दो व्यक्ति बैठे हुए हैं एक व्यक्ति खड़ा है.

पीछे मे एक गीजर लगी हुई हे.

जहां पर सारी लहंगा ज्वैलरी कुर्ती लहंगा सूट पीस --

ये एक रेड कलर का टोटो दिख रहा है।

ट्राउजर लगे हुए हैं और उसपे लिखा हुआ है स्पोर्ट् स्टाइ--